उनमें से कुछ लड़कों ने लाल रंग की टी-शर्ट पहनी है और कुछ लड़कों ने नीले रंग की टी-शर्ट पहनी है।

उसके बाहर अ हरी भरी सी गार्डन है जिसमें बहुत सारे हरे भरे से पौधे लगे हैं।

उस सड़क के आईट साइड बहुत सारे पेड़ पौधे धे लगे हुए हैं और पार्क

कमरे मे सोफा सेट लकड़ी के लाइन से रखे हुए हैं।

गार्डन के अंदर बराबरी पे बहुत सारे अ हरे भरे से पौधे लगे हुए हैं।

बच्चे बंचो पर शीटो को काट काट कर उनके सामान बना रहे है उन बच्चो के पास उनके सर मैडम खड़े है।

और उन महिलाओं के हाथों में कुछ बॉक्स रखे हुए हैं।

दुकान की दिवारों पे हल्का सा हला- हरा रंग का कलर पुता हुआ है।